यह गोंदा फुल ए पीला के गोंदा फुल एसा लगत हे के एला

उ -उ बेचे बर रखे हे कहुक बहुत सारा फुल हे और निचे में घास उगरी लगे हे अच्छा लागत हे येहा ।

यहाँ अपने टाइम पास करत हे अच्छा से घुमत है।

एहा अइसे लागत हे कि प्लांट के सीन ए अ प्लांट में बहुत कन मशीन दिखत हे एमेर अ बहुत बड़े-बड़े पाइप भी दिखत हे जेमे वर्कर भी दिखत हे एमेर काम करे आए हे।